ये भी बहुत बड़ा हॉल है लंब-लंबा हॉल है इसमें भी जिम की मशीने फिट हैं तीन चार मशीनें फिट हैं दिखाई दे रही हैं इसके नीचे के फर्श का कलर काला कलर दिखाई दे रहा है।

ये एक जिम की बड़ी मशीन है नीचे का फर्श इसमें काला है एक सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं इसमें बड़ी-बड़ी चर्की लगी हुई हैं छोटी-छोटी नीचे भी लगी हुई हैं इसमें काँच लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये ऊपरी है। ऊपरी भाग पर ऐ सीमेंट का एंटियाल लगा हुआ है सफेद सफेद पट्टी से पूता हुआ है और बीच में कुछ पट्टी है सफेद वाली पट्टी एक पट्टी और । कुछ कत्थई कलर की से पूति हुई हैं नीले --

यह बिल्डिंग दिखाई दो बिल्डिंग है| एक इस साइड बनी एक इस साइड बनी बीच में मैदान पड़ा हुआ लंबा दिखाई दे रहा है | इस साइड की बिल्डिंग में चार गिरे हुए हैं ।

टंकी का कलर हरा हरा ऑरेंज है। ऊपर से सफेद है। बाजू में तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है। सामने से ऑरेंज पुती हुई और सफेद कलर की है। कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मैदान --

प्रतिमा ब्रादम् ब्रदमान है और यह काले कलर की दिखाई दे रही है वो इसमें सामने रैलिंग लगी है स्टील की सिढ़ियाँ लगी हैं टांगने के लिए।